और यहाँ पर है यहाँ पर और ये लोग कुछ गा रहे हैं माइक से। बोहोत सारे लोग हैं यहाँ पर। बहोत अच्छे-अच्छे --